ए एहर एगो हॉल आहे इहा सब आदमी मन ड्यूटी हाँ का प्रोग्राम होवत हे।

काहीं बीमारी रथे तो इहा ला इलाज करवाय आथे आउ दवा गोली लेके जाथे और इहा ला ज्यादातर भीड़ में बाइक कार में आथे--

--और पूजा पाठ करे बस सूरज उगे का इंतजार करत हवे सब कोई फल फूल धरे के आइन है पूजा करे बा तैयार वैयार होकर आईन हे।

और गुफा का सब करती दिया उआ जलाल हवे--

और ईंहा शादी हुए सा हे और इस बाहर टेंट उट लगके खाना वाना सबके खेलात हवे और आशीर्वाद --

और सब कती टंकी मन मे मछली रखेन हय और एक कती ताजा मछली काट-काट के देखत हाय मछली खरीदे बर ढेर भीड़ आहे।

ए हर एगो स्कूल आहे ए ह लइका मन पढ़े आथे आहिच्चे स्कूल मा पंद्रह अगस्त का प्रोग्राम आहे।

इहा एगो कच्चा का रोड हवे एकर बगल में ढलाई करत है और ढलाई करके पक्का का घर बनावत--